एक फैन लगा हुआ है और एक अंकल जी बाहर बैठे हुए हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और--